कुछ तरह की लाइट भी रखी हुई है।

--और यहां पर बहुत सारी फोटो लगी हुई है और यहां पर एक कैमरा है और लाईट भी लगी हुई है।

ये मूर्ति का कलर सफेद हे और यहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए है और बहोत प्रकार के फुल भी दिखाई दे रहे हैं।